बहोत ही सुंदर सी सजावट दिखाई दे रही है।

जिसमें तरह तरह की दवाइयां भी मौजूद हैं।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ी सी चौपाटी नजर आ रही है।

मुझे इस चौपाटी के बाहर तीन बड़ी-बड़ी टेबले भी नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो पर एक बहुत ही बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक मेंस सैलून दिखाई दे रहा है।

जिसका नाम मोहित वेडिंग्स कार्ड शॉप है।

हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें दो--

फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं।

खारे पानी की बड़ी सी झील--

हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं तथा उसके बाजू में एक गाड़ी भी है।

बहोत ही बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है जिसमें एक--